और यहां काफी सारे लोग पूजा करने आते है।

और यहां बहोत ही भेड़--

यह एक स्कूल की पिक्चर है जहां बहोत सारे लोग--

और यहां तीन कारपेट भी बिछा हुआ है और यहां एक--

एक बहोत सारे मशीनस है।

का दुकान भी है जहां बहुत सारे ब्लूटूथ्स और--

बहोत सारे घर भी हैं।

एक दो खिड़कियां भी हैं।

काफी सारे लोग भी रेहते हैं और यहां--

और यहां काफी सारे महंगे--

और यहां काफी जादा लोग आते हैं और --